एक हाथ भी दिखाई दे रहा है मुझे इसमें दो फोन दिखाई दे रहे हैं मुझे इसमें एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

मुझे इसमें एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है मुझे इसमें एक पत्थर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इसमें एक लेडिस भी दिखाई दे रही है।